ए एक पेट्रोल पंप है जिसमें एक ओटो भी साइड में है।

कुछ बाइक्स भी हैं और वहां पे ये तीन बाइक है।

कुछ चल रहे हैं और वहाँ पे बहोत सारे आदमी भी हैं।

अंदर से तो बहोत अच्छे से सजाया गया है लेकिन उसके--

जिसके सामने इन लड़कों ने खुद का फोटो उठाया --

वहां पे बहुत सारे लोग एक ही जगह पे--

इसमें ब्लू कलर के झंडे ये डंडे भी लगाए गए हैं।

और इस पे कुछ हिंदी से लिखा भी गया है।

और वहां पे बहोत सारी डेकोरेशन भी की गई है।

ये येलो और ब्लैक कलर की डेकोरेशन की है।

ये दिन का समय है धूप भी बहोत ज्यादा है।

लेकिन ये येलो कलर पिंक कलर रंग बिरंगीन कलर के हैं।

ये एक जंगल है जिसमें एक एनिसेन्ट बुद्ध केवस देवगढ़ लिख के है।

साइड में भी एक आदमी है जिसको सफेद रंग के कपड़े लगा के हैं।

सड़क है जहां पे ऑटोज खड़े है।

और जो ऑटो के बाहिर है उसके शर्ट का कलर ब्लैक है।

एक आदमी भी है जो अपना साइकल लेके काम कर रहा है।